और तीन लोग पीछे में बात कर रहे हैं।

यहां मुझे कई सारे महंगी गाड़ी दिखाई दे रहे हैं और एक बगल में स्टाफ जो बैठे हुए हैं।

इसके साथ कहीं सारे लाइटे चमक रहे हैं और अंधेरा ऊपर में बहोत सारे--